एक झंडा लगा हुआ है। करकट का गिरा हुआ है बगल में देखने में अच्छा है।

बिल्डिंग बहुत आलिशान है। ऊपर आसमान दिख रहा है। बादल छाया हुआ है। नीचे कच्ची रस्ता है। बिल्डिंग का कलर रेड कलर से किया हुआ है उजला कलर से किया हुआ है।

दराज दिख रहा है चेयर दिख रहा है। देखने में अच्छा लग रहा है। ईट का डिज़ाइन भी दिख रहा है।

और छोटे छोटे स्कूटी है।